यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता है उस रास्ते के आजू बाजू में बहुत सारे हरे हरे पोधे लगे हुए है।

आजू-बाजू मे बहुत सारे पेड पौधे लगे हुए है और सामने की तरफ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ऊपर की तरफ सफेद आसमान है।

यहाँ पे एक रास्ता है और आगे एक बस स्टॅंड इस रास्ते पे बहुत साडी गाड़िया खड़ी है।

चर्च के आजुबाजु बहुत सारे पेड़ है और ऊपर की तरफ नीला आसमान भी है।

यहाँ पे एक सड़क है सड़क पे बहुत सारी मिट्टी है और सड़क पे बहुत सारी गाड़िया भी खड़ी है।

यह एक बेकरी की दुकान है इसके अंदर बहुत सारी चीज़े है।